जहां पर हॉस्पिटल के अंदर कमरे में तीन बेड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रही है अलमीरा का कलर ब्राउन कलर का है इस अलमीरा को उपयोग कपड़े रखने में किया जा सकता--